आप देख सकते हैं यहां पे--

बैंड बाजे दिखाई दे रहे हैं नीचे मैट दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ एक पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

हमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जोकि--

दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहां पे--

मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है जिसमें--

कॉफी का स्टॉल लगा हुआ है जहां पे तीन चार लोग कॉफी पीने आए हैं जिसमें से--

हेलो दोस्तों! तो यहां आप देख सकते हैं यहां पे--

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ एक नाव दिखाई दे रही एक समुद्र दिखाई दे रहा है।

हमें एक गैलरी जैसी दिखाई दे रही है और गैलरी में कई सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

नेपाल के लड़का ये भी और उसमें सिर्फ वाइट रंग लगा है और नीचे मैट बिछी हुई है टाइल बिछी--

हेलो दोस्तों तो देख सकते हैं आप हमें यहां पे एक--

बहुत बड़े चिन्ह दिखाई दे रही है और चिन्ह में जो-जो मशीनें यूज होती है वो सारी दिखाई दे रही हैं और--

फेट आगे को जा रहे हैं और नीचे के रोड दिखाई दे रहा और पीछे बहुत बड़ी सीनरी दिखाई दे रही है।